यहाँ पर एक बोर्ड लगा है ये बोर्ड एक बैंक का है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

ये चित्र एक विवाह के अवसर का दिख रहा हैं जहाँ पर हॉल काफी सजा हुआ--

दिवार पर राष्ट्र महाराष्ट्र की विद्युत वितरण कंपनी का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा हैं।